रिक्शे की दाई साइड पे एक इश्तेहार लगा है और बिल्डिंग पर भी कुछ हिंदी में लिखा हुआ है।

पलंग के ऊपर दो सरहाने पड़े है सरहाने के ऊपर चद्दर बिछी है उसके --

से नीले रंग की पथलून पहनी है हाथ में उसने घड़ी पहनी है।

और इसकी टहनियाँ बाहर आ रही हैं पता नहीं गंद पड़ा हुआ है।

उसके नीचे जमीन है ये एक बंदा मोटरसाइकल के ऊपर आ रहा है।

गाड़ी को रोकने के लिए और साइडों पे खंबे लगे है बहुत ही खूबसूरत जगह है ये ।

पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए यहां पर पेंसिलें पड़ी हैं जिसमें पीला रंग है सफेद रंग है लाल रंग है नीला रंग है और बहुत के यहां पर--

और यह नीचे पत्थर लगा है पत्थर बहुत ही खूबसूरत रंग का है ये सफ--

छत भी नई है और दाई साइड पर रंग की दुवार है सफेद रंग है उसपे और --

ये एक बजार है जहां पर बहोत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं यहां पर लोग --

जिसके जड़ो मे बहुत ज्यादा मिट्टी हैं और--

ये एक होटल है जहां पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं।